टी-शर्ट और ब्लैक ब्लू पैन्ट पहना हुआ है। एक लड़की ने ब्लू टी-शर्ट और ब्लू पैन्ट पहना हुआ है। लड़की के बाल खुले हैं।

जिश पर श्री कृष्ण इंटर कॉलेज --

इसमें मुझे एक खंबा भी दिख रहा है जिस पर लाइट्स लगी हुई है इसमें कुछ पत्थर भी दिखाई दे रहे है और पेड़ पे दिखाई दे रहे हैं।

पीछे की दीवार मुझे वाइट कलर की दिखाई दे रही है।